यहाँ पे बाल कटाने में काफी अच्छा लगता है यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे नाई होते है जो की लोगो के अच्छे से बाल काटते है ।

यहाँ पे बहुत ही सस्ते दामो में इलेक्ट्रिक सामान दिए जाते हैं और यहाँ पे सभी कंपनियों के सामान मौजूद रहते --

जगहे होती है घुमने की यहाँ पे बोहोत ही अच्छा हवा है यहाँ पे बोहोत बड़े-बड़े चट्टान होते है और लोग यहाँ पे घूमना पसंद करते --

डेम में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं और डेम के पानी से लोग नहाते हैं डेम में --

बहुत सारे लोग मारुती की मारुती सुजुकी की कार खरीदना पसंद करते है और मारुती सुजुकी की कार --